दो कप है कुछ लड़के है कैमरा है रुमाल है सनग्लासेस हैं।

नाँव है रस्सी है आदमी है नदी है बिल्डिंगे हैं।

जाली है लाईट है फूल हैं।

मेल है मूर्तियाँ है कुर्सी है बैनर है पेड़ -पौधे है लाईटिंग हैं कुछ लोग हैं।

साइकल है लोग है दुकाने है रोड है सूखे पेड हैं।

मूर्ति है पर्वत है पंडाल है कुछ लोग है फ़ोन है बैग है त्रिशूल हैं।